और भी चीजे रखी हैंऔर यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं।

छोटे से देख स्टेज सा बना हुआ है और यहाँ छोटे बेंच रखे हुए है बैठने के लिए।

और एक बाउंड्री बनी हुई है। ग्राउंड की --

सब स्टूडेंट देख रहे होंगे कितना मस्त सजा भी है और यहां रेल वाली पटरी भी डली हुई है बच्चों के लिए |